आर्टिस्ट टू फिट्नस है जेंट्स खड़े है ।

पे दो गमला है ये गमला है नर्सरी है झाड़ है फूल है ।

ये टोयोटा कस शोरूम है गाड़ी है दो गाड़ी दिख रही है और सारी गाड़ी है ऊपर में लाइट है शोरूम है।

पीला कलर का फूल है वाइट कलर का फूल है रेड कलर का फूल है ।

झाड़ भी दिख रहा है प्लेटफॉर्म का लाइट भी दिख रहा है।

गमला दिख रहा है रखने वाला सामान दिख रहा--